हमें एक एंबुलेंस खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

गमलों में कुछ छोटे पौधे भी लगे लगे हुए हैं कुछ बड़े पौधे लगे हुए हैं।

नदी का पानी काला सा दिखाई दे रहा है और हमें एक बोट दिखाई दे रही है।

खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और पीछे एक पीले कलर की बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

बाइक का शोरूम दिखाई दे रहा--

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका रंग ब्लैक कलर का है।

हमें पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

एक नीले कलर की शीट रखी हुई दिखाई दे रही है।

हमें एक कालीनर दिखाई दे रहा है।

यहां हमें एक ई रिक्शा दिखाई दे रही है एक आदमी ने उसका हैंडल पकड़ा हुआ है।

उस आदमी ने व्हाइट कलर की टी शर्ट और वाइट कलर के शॉर्ट्स पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

पीछे हमें एक दुकान दे दिखाई दे रही है जिसपे एक पोस्टर लगा हुआ है और जिसपे लिखा हुआ है सैनिक साइकिल मार्ट ।

यहां हमें एक ट्रेन की खिड़की दिखाई दे रही है।

काफी सारी किताबें लखाई दे रही है।

इस फोटो में जैसा कि हमें देख पा रहे है हमे एक लाल कपड़े पर बहोत सारी मछलियां नजर आ रही हैं।

पीली पीठी नजर आ रही है जिसमें बहोत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

लोहे की तराजू नजर आ रही है।

हमें दूर देखने पर बहोत सारी लाइटें नजर आ रही हैं।

इस फोटो में जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमे बहुत सारी शेल्व्स नजर आ रही हैं।

दूर देखने पर हमें एक शेल्फ नजर आ रही है।

स्टीकर दिखाई दे रहा है जिसपे डॉक्टर बबल्स लिखा हुआ है।

यहां हमें एक टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

नए लोग अ एक योगा करते हुए दिखाई दे रहे--

पीछे हमें पर्दे दिखाई दे रहे हैं इनका रंग नीले कलर का है।

सामने एक फाइबर दरवाजा भी दिखाई दे रहा है जिसपे बहुत सारे स्टीकर लिखे लगा हुआ है।

इन औरतों ने अलग अलग रंग की साड़ियां पहनी हुई हैं।

साड़ियों का रंग नीला हरा और औरेंज और पर्पल है।

पीछे हमें एक दीवार दिखाई दे रही है।

मारी दिखाई दे रही है और दीवार पे दो पेंटिंग भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ औरतें भी दिखाई दे रही है।

एक ब्राउन कलर का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपे लिखा हुआ है श्री राम ग्रुप आफ कॉलेज --

में एक शीशा दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी अलमारी दिखाई दे रही है शीशे दिखाई दे रहे--

नदी में कुछ लोग नहा रहे हैं।

पीछे हमें कुछ और लोग दिखाई दे रहे हैं।

हमें शीशे दिखाई दे रहे हैं।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

एक डब्बा दिखाई दे रहा है जिसका रंग ब्राउन कलर का है उसपे एम सी ए फाइव टू फाइव जनरेटर लिखा हुआ है।

नी सूरज दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंगे दिखाई दे रही है हमें एक घास चरता हुआ घोड़ा दिखाई दे रहा है।

हमें एक दीवार पर पेंटिंग भी दिखाई दे रही है।